पत्थर दिखाई दे रहे आगे में और पहाड़ दुर में ग्रीन ग्रीन से दिखाई दे रहे।

ये फोटो में ऑफिस की तरह दिखाई दे रहे टेबल में टेबल क्लॉथ बिछाते हैं।

इधर में बहुत सारा वाइट कलर का बैग लोग है।

फील्ड ग्रीन कलर है बट क्लीन से दिखाई दे रहा है।

ये पिक्चर में गोबर की तरह दिखाई दे रहे फैला के।

वॉल में बैलून दिखाई दे रहा है फुला के।

प्रेस दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में वाइट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

बेम्बू से बनाने ला सीढ़ी दिखाई दे रहे।

बाहर में स्कूटी ब्लैक कलर का पार्क करके है।

ऊपर में व्हाइट कलर का बॉक्स लोक रखके दिखाई दे रहा है।

और राइट साइड में चार ठो कराटे का ड्रेस पहन के दिखाई दे रहा है वो लोग कुछ कर रहा है शायद।

और चर्च जाके जाने वाला स्टेप रेड कलर में दिखाई दे रहा है।

ऐ फोटो में घर और पहाड़ लोग दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहे ऊपर नीचे करके आसमान ब्लू करके दिखाई दे रहा है।

बैलून से डेकोरेशन किया हुआ है बैलून का कलर ऑरेंज ब्लू पिंक येलो कलर है।

ऊपर में ग्रीन कलर का डिब्बा का तरह तीन ठो है ब्लू कलर --

रेड कलर का कारपेट बिछा के है।

ऐ फोटो में दुकान दिखाई दे रहा है।

एक लड़का ऑटो का अंदर में है एक लड़का बाहर में है।

ये फोटो में फैक्ट्री का तरह इंडस्ट्री का तरह दिखाई दे रही--

पिज़्ज़ा लोग भी दिखाई दे रहा है पिज़्ज़ा लगने वाला भी।

और बहुत सारा बाइक पार्क करके है बाहर में।

बकरी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का उसके सामने राइट तरफ में डक्ची दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का बकेट पकड़ के है और एक बकेट जमीन में रके हैं।

वायर दिखाई दे रहा है स्विच बॉक्स दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का।